पर्वत में आदमी चल रा है।

इसके यहाँ का दीवाल पीला है।

और प्लास्टिक में खाने का चीज भरा हुआ है वही चीज दुकान में --

पेड़ - पौधा झाड़ी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर गुब्बारे जैसे भी है।

उसके बगल में पेड़-पौधा सब हैं और सामने एक मकान दिखाई दे रही है ।

एक बहुत बड़ा घर है में कार खड़ी है।

दो आदमी बैठा है एक सो रहा है।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

आगे में नदी है उसके आगे और पुलिया है पुलिया के ऊपर में बस है।